यहाँ सामने काफी बड़ा सा भवन नजर आ रहा है। भवन के किनारे-किनारे काफी सारी खिड़कियां नजर आ रही हैं। यहाँ नीचे मैदान में काफी सारे लोग भीड़ में लगे हुए हैं।

सामने एक टेबल रखा हुआ है। टेबल के ऊपर ब्लैक कलर का एक ट्रे है। इसके ऊपर दो कप है। कप का रंग ब्लैक है। यहाँ पर दो स्पून है। एक स्पून क --

सामने काफी सारे मकान नजर आ रहे हैं। बीच में एक बड़ा सा मस्जिद नजर आ रहा है। मस्जिद के बाहर बड़ी सी लाइट लगी हुई है और ऊपर कुछ माईके लगी हुई हैं।

यहाँ सामने स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन खड़े हुए हैं। पीछे स्टेज को फूलों से सजाया गया हुआ है। पीछे एक पर्पल कलर का चेयर रखा हुआ है और पीछे पत्तियां लटकी हुई हैं।